यहाँ पर कुछ बसे खडी हैं। यहाँ पर --

टोटो ऑटो है। सी.अन.जी. वाले ऑटो है।

एयर पार्ट उतार दिए गए हैं। यह पूरी --

स्विमिंग पूल की है। स्विमिंग पूल बोहोत बड़ा है।

आकार में है। इसकी चार दीवारी की रखी है।

फ़ीजीओथेरेपी की है जहां पर एक व्यक्ति अपने कमर की --

यह एक डॉक्टर है जोकि एक क्लिनिक खोल रखी है।

कुछ मार्केट के अन्दर कुछ बाइकें खडी हुई नज़र आ रही हैं जोकि एटीएम --